मार्केट है| यहां पर तरह-तरह की मछली है | यहां पर रो मछली झींगा है | कोई व्यापारी बेच रहे है|मछली खरीद रहे हैं | गोल्डन मछली भी है |

यहां पर कुछ कर रहे हैं यहां पर पत्थर के सीमेंट के बने हुए टाइल्स है स्कूटी है अभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।